लोग खड़े आपस में बातें कर रहें हैं।

कुर्सियों पर बंदे बैठे हुए हैं।

हाल में बहुत से लोग जमा हैं।

हाल में बत्तियां भी जल रही हैं।

दो बड़ी बड़ी अमारते नजर आ रही हैं।

स्टैन्ड में बहोत सी किताबें पड़ी हैं।